इसमें बहुत सारे आदमी है जोकि नाव चला रहे है और मस्ती कर रहे हैं।

यह एक घर है जो की बहुत ही सुंदर दिख रहा है इसका पेंट भी बहुत ही सुंदर कलर से किया गया है।

बाहर में दो बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं जो की शीशा लगाया हुआ है और एक खिड़कियां है जिसमे शीशा नहीं लगाया हुआ है

बहोत सारे छोटे छोटे स्टीकर भी चिपकाए हुए हैं।

सामान में बहुत सारे कुर्सियां हैं और गोदरेज हैं।

सामने एक आदमी खड़ा है जो कि पिंक कलर का शर्ट टी शर्ट और ब्लैक कलर का जींस पहना हुआ है।

जिसका पिलर येलो कलर का है और बहुत सारे आदमी में आदमी भी हैं।

केला का पत्ता लगा साइड साइड में रखा हुआ है।

नीला कलर का एक पोस्टर है उसमें लिखा हुआ है अस्ट्रल पाइप्स इंडिया का भरोसमंद पाइप --

बहुत सारे मसाले भी हैं इसका बोर्ड व्हाइट कलर का है उसमें दो स्विच भी है।

किचन भी वाइट और ब्लैक कलर का है।

यहां बिल्डिंग बन रही है बहुत बड़ी बिल्डिंग है।

इसमें एक आदमी है जोकि बॉटल से पानी पी रहा है और पोज देके खड़ा है।

तीन जगह में रखा हुआ है जामुन है केला है सेव है।

एक ट्रैक्टर भी हैअंदर में बहुत सारे आदमी हैं जो कि धुंधले दिख रहे हैं इस शोरूम का नाम सो सोरभा ऑटोमोबाइल्स है।

एक स्कूल है इसका पेंट रेड और येलो कलर से किया हुआ हैं।

जो कि रंग बिरंगे हैं और बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं।

सभी मे सीसे लगे हुए हैंऔर सभी खिड़कियों मे भी सीसे लगे हुए हैं।

नीचे कपड़े सूखने के लिए दिए गए हैं।